वस्त्र भी पीला पहना है बगल में लाल ब्लू मिक्स कलर पहना हुआ है।

आठ ट्रैक्टर हैं अलग अलग रंगों के ब्लू हरा ब्लू हरा ऐसे ही पीछे में बहुत बड़ा पेड़ हैं।

अलग अलग रंगों की टी_शर्ट अलग अलग रंगो के पेंट सड़िया सामने एक ग्लास है।

ऊपर मे लोगो बना हुआ है दुकान का बगल मे एक लाल गेट है।

ग्रीन कलर का दीवार में लगाया हुआ है नीचे का फ्लोर बहुत बढ़िया है जूता पहना है।

बड़े बड़े तीन पेड़ दिख रहे हैं एक सड़क दिख रहा है।

ग्रोरी सारी का बैनर लगा हुआ है जिसके ऊपर दुर्गा मां का तस्वीर है।

पंडी जी उसका चुनरी बांध रहा है पंडी जी सफेद रंग का धोती पहने हैं।

जिसका अलग अलग रंग है लालपिला हरा ब्लू सभी प्रकार के।

नीचे का मेट काला है पिलर में हरा हरा मेट लगाया हुआ है।

बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं।

यहां एक कमरा है जिसके अंदर एक जनरेटर रखा हुआ है।

सामने एक टब रखा हुआ है जिसका कलर काला है।

केशव आर्यालय आश्रम जहां लोग ठहरते है एक टेबल है दो चेयर है।